एक मैदान है मैदान में हरी घास है।

दुकान के ऊपर एक बोर्ड है।

बोर्ड में एक नाम है चार ग्लास --